यहाँ पर कुछ लोग पेड़ों के पास भी खड़े हैं। यहाँ पर बड़े और दो छोटे दोनों किस्म के पेड़ हैं।

और एक अ यक्ति मोटर साइकिल पार्क कर रहा है।

कबूतर भी है ये तोते पिंजरे में कैद है। पिंजरा लोहे का है जिसका रंग काला है।

इस तस्वीर में एक किताबों की बड़ी सी दुकान है इस दुकान में बहुत सारी किताबें पेन पेंसिल नोटिस और भी चीजें रखीं हुईं हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारी गाडियाँ खड़ी हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी झील दिखाई दे रही है जिस झील के आस पास बड़े बड़े हरे भरे वृक्ष हैं।